यहां पर एक और डिजाइन को देखने को मिल रहा है जो कि एक पिलर के ऊपर गुजरी हुई है।

यहां हम देख सकते हैं कि दोनों साइड पर रेल की पटरियां बनी हुई हैं और एक साइड पर ट्रेन खड़ी हुई है।

कुछ व्यक्ति सामान के साथ बैठे हुए दूसरी ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं।

देख सकते हैं यहां पर बारिश का माहौल है जिस पर पानी भी पड़ा हुआ है बेंच पर दिखाई दे रहा है।

यहां देख रहे हैं कि एक व्यक्ति दूर कहीं खड़ा हुआ भगवान के आगे हाथ जोड़ रहा है।

तस्वीर में हम देख सकते है कि यहां पर एक नृत्य प्रोग्राम हो रहा है।

यह तस्वीर एक डेजर्ट रेस्टोरेंट की है यहां पर गुलाबी और लाल कलर की लाइट लगी हुई है।

हमें यहां पर बैंगनी कलर के फूल दिख रहे हैं और सफेद कलर के भी फूल दिख रहे हैं। हमें यहां पर एक काली कलर की चीज पड़ी हुई दिखाई दे रही है जो कि रोड --

हमें यहां पर एक हेलीकॉप्टर की आकार की घड़ी भी देखने को मिल जाती है और एक साइड में हमें तिरंगा लगा हुआ भी दिख रहा है।

हमें यहां पर काफी मजबूत दीवारें देखने को मिल रही है जो की काफी पुरानी दिख रही है।

यह तस्वीर हमें एक बेकरी की दिखाई जा रही है जहां पर हम देख सकते हैं कि बहुत ही अलग प्रकार के सैंडविचेस रखे हुए हैं।

यह तस्वीर फातिमा हॉस्पिटल की है जहां पर हम देख रहे हैं कि बाहर की दीवार का कुछ काम चुनवाई के लिए पड़ा हुआ है।

नीले कलर की स्विफ्ट डिजायर और व्हाइट कलर की क्रेटा ।

यह तस्वीर हमें एक दवाई स्टोर की दिखाई दे रही है जहां पर हम देख सकते हैं कि बच्चो से रिलेटेड काफी सारे क्रीम और पाउडर वगैरा भी रखे हुए हैं।

पांच से छह शायद दिखाई दे रहे हैं जिनमें काफी सारी क्रीम रखे हुए हैं जो की महिलाओं से जुड़े हुए भी हैं।

और नींबु का बेचने वाला व्यक्ति भी दिख रहा है जोकि टोपी पहन कर पैसे गिन रहा है।

में यहां अष्टविनायक लॉन्ड्री सेंटर के भी तस्वीर देखने को मिल रही है।

हमें यहां पर एक व्यक्ति दि दिख रहा है जो कि फोटो खींचवा रहा है। उसका चेहरा पूरी तरीके से ब्लर किया हुआ दिखाइ दे रहा --

फावड़ा लेकर के खड़ा हुआ है और एक व्यक्ति जाल को पड़कर के खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर एक सीमेंट्स की दीवार से कवर की गई नर्सरी की है।

तेल भरवाने के लिए खड़ा हुआ है साथ ही में हमें एक दूसरा भी डंपर दिख रहा है।

मैं ब्लैक कलर की प्लेट के अंदर सफेद चावल और कटोरी में दाल सब्जी और सलाद रखा हुआ है।

हमें एक काली कलर की टी शर्ट में व्यक्ति काम करता हुआ भी दिख रहा है।

यहां पर काफी सारी कुर्सियां और टेबल वगेरा देख सकते हैं यहां पर साज सजावट भी बहुत अच्छी तरीके से करी गई है।

हम देख रहे हैं यहां पर रेड कलर की और हरे कलर की मैट पड़ी हुई है।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

रेड कलर का ब्लूटूथ दिखाई दे रहा है पीछे उसके पहाड़ दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर एक वन विभाग की है हमारे चिन्ह प्रतीक वन्य जीव का पोस्टर लगा हुआ है।

इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि दो नर भैंस एक दूसरे को बहोत ही करीब जा कर के सूंघ रहे हैं।

हम देख सकते हैं कि यहां पर काफी सारी हरियाली भी बहोत ही अद्भुत तरीके से दिखाई दे रही है।

काफी सारी लड़कियाँ बैठी हुई योगा का कोई आसन करने की प्रयास कर रही है।

देख सकते है कि यहां की डेकोरेशन बहोत ही कमाल की और लाजबाव दिखाई दे रही है।